यह एक नाव है बहुत बड़ा का नाव है नाव का तीर का जो फ़ोटो लिया गया है ए जो लड़का है वो मास्क पहना हुआ है और यहाँ --

यहाँ एक नदी है और अगल-बगल--

यहाँ दो छत का पक्का का घर है आउ बहुत ही सुंदर जिसका घर है वो बहुत ही सुंदर है और खिड़की भी लगा हुआ है कांच का और यहाँ--

यहाँ फूड ट्रैक लिखाया हुआ है और यहाँ बहुत बड़ा का कोई दुकान है दुकान --

यहाँ प्लेट है इस प्लेट में अम कुछ रोटी- वोटी है जैसे लग रहा है और कुछ चटनी है खाने के लिए और --

लगे हुए और उधर मैदान है और इधर बगल में बोंडरी लग उसके बगल बगल में पेड़ पौधा है और --

यहाँ दो दोस्त है आपस में फ़ोटो खिचाये है एक नाव है और नदी में यह लोग फ़ोटो खिचाने के पीछे नाव चलाने वाला भी--